यहां पर दो लाइटे लगी हुई हैं।

एक ग्राज जिसमें गाड़ी दिखाई दे रहा है छोटा सा।

इसमें एक लड़की जो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रही है।

यह एक सुंदर बगीचा है।

नाई की दुकान में सजावट हो रखी है फूलों की और बलूंस की।

यह एक नया घर का इंटीरियर दिखाई पड़ता है जिसमें जामुनी कलर और हरे कलर का इस्तेमाल करके किया गया --

पिच पूरा तरह से समतल है।

यह एक कलर की दुकान मालूम पड़ती है जिसपे सीमेंट के बोरे कलर के डिब्बे और टाइल्स भी रखे हुए हैं।

इसमें काउंटर पे मेनू कार्ड कैलकुलेटर और सजावट के लिए पक रंगीन पत्थर दिखाई पड़ रहा है और एक घड़ी और पंखा भी दिखाई पड़ रहा है।

यह टेबल अत्यंत सुंदर से सजाया हुआ है और अभी खाली दिखाई पड़ता है।

वो तोहड़ा सवाल है और उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन ओन है।

यह एक मैदान है जिसमें अत्यंत तीव्र धूप पड़ रही है।

एक घर है जो काफी शांत सा है।

और कुछ विभिन्न प्रकार के पौधे हैं और ऊपर बोतलें रखी हुई हैं।

सुंदर दिखाई पड़ता हुआ ये मकान है।

यह एक चौराहा दिखाई पड़ता है।

कसरत करते हुए एक औरत दिख रही है।

यह गाय का तबेला है।

यहां पे पीछे की तरफ फेसिंग दिख रही है।

आदमी यहां पे खड़ा हुआ है।